जिसकी सतह भूरे रंग की है और उसपे लाल रंग कि कई पट्टियां सफ़ेद रंग की कई पट्टियां चढ़ी हुई है।

सड़क के किनारे एक भवन दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद और लाल कलर का है। भवन के द्वार पे हरी घास--

लाल रंग का सुंदर पेड़ जिसके फूल हैं लाल रंग के नीचे हरी-हरी घासें --

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग एक नाव के अंदर बैठे हैं। नाव का जो कलर है वो गोल्डन है तथा सतह --

इसपे खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं तथा बाहर की तरफ --

उस पे एक व्यक्ति भी खड़ा है। मिटटी के ऊपर तथा चारों तरफ ग्राउंड सा है और इसके अगल-बगल दो तीन घर दिखाई दे रहे हैं।

दोनों साइड खेत नजर आ रहे हैं जिनपे हरी-हरी पत्तिया दिखाई खिलखिलाती देख रहे हैं। बीच में एक छोटी-सी रोड जा रही है।

तथा स सुरवाती पेड़ बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है और खेत के उस पार बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर यह एक मिठाई वाले की दुकान लगती है जहाँ सामने की ओर शीशे से --